एजीसी वल्ब लिखा हुआ है बस के अंदर कुछ यात्री बैठे हुए है और बस के सामने एक आदमी खड़ा है।

एक तरफ पहाड़ दिख रहा है नदी के ऊपर सूरज दिख रहा है सूरज की रोशनी नदी के ऊपर पड़ रही है और --

मैं एक बड़ा अम्म बड़े से भवन का बरामदा दिखाई दे रहा है।

दुकानदार बैठा हुआ है दुकान के काउंटर के बाहर एक आदमी खड़ा है दुकान में कैरम बोर्ड रखे हुए है किताबे रखे है बैट बल्ला रखे हैं ।

और फिर खिड़किओं पर कांच लगी हुए है सामने कॉम्प्लेक्स के बिजली के तार दिख रहे है सड़क दिख रहे है सड़क पर कुछ लोग दिख रहे है कॉम्प्लेक्स --

और उसमे फुब्बारा चल रहा है और उस गोलाकार फुब्बारे के चारो तरफ घास लगी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा भवन दिखाई दे रहा है और यह भवन--

फूलों की माला लटकी हुई है गार्डन में सोफे रखे है कुर्सियां रखी है कुछ लोग दिख रहै है।

में स्टेसनरी की दुकान दिख रही है जिसमे बहुत सारी आलमारियाँ बनी है सारी आलमारियाँ बहुत सारे खंडे है।